और बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं और केन्ता गाड़ियां भी पड़ी हुई नज़र आ रही हैं ।

दो पेड़ भी लगे हुए नज़र आ रहे है और एक टीन शेड भी नज़र आ रहा है और उसके अंदर एक शख़्स खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और भगौने भी पड़े नजर आ रहे हैं--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ एक बिल्डिंग नजर आ रही है और उसकी बालकनी भी नजर आ रही है और उसकी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

यहां भी नजर आ रही है और उसी के नीचे एक पंडाल बना हुआ नजर आ रहा जिसमें एक मूर्ति बैठी हुई नजर आ रही।

और एक बाइक भी चलती हुई नजर आ रही है और एक साइकिल भी नजर आ रही है और बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं और एक बिजली का खंभा भी नजर आ रहा--

बहुत सारे डब्बे भी रखे हुए नजर आ रहे हैं कुछ डब्बे प्लास्टिक के हैं तो कुछ डब्बे घास के नजर आ रहे --

और कुछ क्लिप भी लगे हुए नजर आ रहा है और लाइटे भी जलती हुई नजर आ रही है।

और नाला भी नजर आ रहा है और दीवार भी नजर आ रही है और हरी घास भी नजर आ रही है दिन का व्यक्त मालूम होता है।

उसपे जलती हुई लाइट भी नज़र आ रही है और बिलडिंग पे ऊपर रखी हुई एक पानी की टंकी भी नज़र आ रही--

और कैमरा भी लगा हुआ नजर आ रहा है और एक तराजू भी नजर आ रहा है बहुत सारी कुर्सियाँ भी रखी हुई नजर आ --

उन कांच के अंदर एक बल्ब भी जलता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर सीलिंग में टंगी हुई नजर आ रही है और अलमारी के ऊपर एक झाड़ू भी नजर आ रही है--

बहुत सारी बोतले भी रखी हुई नजर आ रही है रात का वक्त मालूम पड़ता है।

और बहुत सारी हरी घास भी लगी नजर आ रही है और बिजली के तार भी लगे नजर आ रहे हैं एक ब--

और ऊपर दो पंखे भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं सामने एक घड़ी भी नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं। यहां पर बहोत सारे लोग अपने अपने काउंटर पे बैठे काम कर रहे है और एक काउंटर --

बिलडिंग भी खिड़कियां भी नज़र आ रही हैं और उनपे लगा हुआ खजूर का पेड़ भी नज़र आ रहा है ए--

एक बिल्डिंग के ऊपर पानी की सेरटीस की टंकी भी रखी नजर आ रही है और पानी का पाइप भी नजर आ रहा है में --

सारे लोग भी खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनके कंधों पर टंगे हुए बैग भी नज़र आ रहे --

पीछे बड़ी सी गेंद भी रखी हुई नजर आ रही है एक सफेद कलर की पन्नी भी रखी हुई नजर आ रही है।

और एक रेलिंग भी नजर आ रही है और एक शख्स के कंधे पे डला हुआ रुमाल भी नजर आ रहा है दिन का वक़्त मालूम पड़ता है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एक दुकान नजर आ रही है और एक लोहे का शोकेश भी नज़र आ रहा है लोहे के शोकेस के अन्दर बहुत सारी सैनिटरी पैड भी रखी हुई नजर आ रहे है।

सामने ये पानी की बोतले भी रखी हुई नजर आ रही है और कागज के थैले भी नजर आ रहे है और एक र--

नीला कलर आ रहा है और एक खोखा भी पंखे में रखा हुआ नजर आ रहा है और बोतलें भी रखी हुई नजर आ रही--